यहाँ पर मुझे इक छोटा सा रुम दिखाई दे रहा है जो स--

कुछ खिड़कीयां दिखाई दे रही है और कुछ दरवाजे दिखाई दे रहे हैं ।

और कुछ पेड़ पोधे दिखाई दे रहे हे जो ग्रीन कलर के हें और दो गमले दिख--

यहां पर मुझे एक बहुत बड़ा गाड़ी का शोरूम दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है।

और कुछ कारपेट दिखाई दे रहे है जो लाल कलर के है और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो यहाँ पर आये हुए हैं।

और बहुत सारे सूखे पत्ते दिखाई दे रहे है जो मिट्टी कलर के है और हल्के हरे कलर के है।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

इसमें कुछ लाइटें लगी हुई है जो सफ़ेद कलर की है और पीले कलर की है और लाल कलर की है।

और एक गमला दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है जिसमें कुछ पौधा लगा हुआ है जो हरे कलर का है।

यहां पे मुझे एक मंदिर दिखाई दे रहा है जो ग्रे कलर का है और सफेद कलर का है और ब्लू कलर का है।

इसमें एक गेट दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद कलर का है और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो यहाँ पे आये हुए है।

यहाँ पर मुझे एक छोटा सा कमरा दिखाई दे रहा है जो काले कलर का है जिसमे कुछ व्हाइट कलर से लिखा हुआ है ।

और बहुत सारे गमले दिखाई दे रहे है जो काले कलर के है जिसमे छोटे छोटे पौधे लगे हुए है जो हरे कलर के है ।

और एक आदमी दिखाई दे रहा है जो ऊपर से नीचे आ रहा है।

और बहुत सारे घास दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के है।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

और दो इंसान दिखाई दे रहे हे जो सामने में खड़े है।

और कुछ घरें दिखाई दे रही है जो सफ़ेद कलर की है और सीमेंट कलर की है जिसमें दो गेट दिखाई दे रहे है जो ब्लू कलर के है।

यहाँ पर मुझे एक इस्टेच्यू दिखाई दे रहा है जो गोल्डन कलर का है जो हाथ जोड़े हुए है।

और एक लड़का दिखाई दे रहा है सामने में जो व्हाईट कलर का शर्ट।

में बहोत सारी पाइपे दिखाई दे रही हैं जो सफेद कलर की हैं।

और बहुत सारे लोहे के रड दिखाई दे रहे है जो मिट्टी कलर के हैं।

यहा पर मुझे एक दुकान दिखाई दे रहा हे जो सफ़ेद कलर का हे और येलो कलर का हैं।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

और कुछ काच का बना हुआ हे जो सफ़ेद कलर का हें और कुछ बेनर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे एक बड़ा सा कमरा दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है और काले कलर का है और सफेद कलर का है।

और एक राउंड सेप में टेबल दिखाई दे रहा है जो सिल्वर कलर का है।

रेड कलर के हे और गोल्डन कलर के हे और कुछ लोग दिखाई देरे हे जो काम कर रहे हैं।

अब बोहोत सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे पोधे दिखाई देरे हे जो ग्रीन कलर के हैं।

में कुछ लाईटे लगी हुई है जो सफेद कलर की है और बहोत सारे अलमारी जैसे कुछ बने हुए है जो सफेद कलर के है ।

और बहोत सारे बड़े बड़े पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के है।

यहाँ पर मुझे दो रोड दिखाई दे रहे है जो ग्रे कलर के है जिसमे कुछ लाइने बनी हुई है जो सफेद कलर की है ।

यहा पर मुझे एक थोडा बड़ा सा रूम दिखाई देरा हे जो सफ़ेद कलर का हैं।

इस में तीन बेड दिखाई दे रहे हैं जो काले कलर के हैं इसमें गद्दा बिछा हुआ है जो सफेद कलर का है और मिट्टी कलर का है।

यहाँ पर मुझे एक बहुत बड़ा सा बस स्टैन्ड दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारी बसे दिखाई दे रही है।

और बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है जो खड़े है और बहुत सारे बड़े बड़े और छोटे छोटे पेड़ पौधे दि।

और कुछ फुले दिखाई दे रही है जो हलके लाल कलर की है और बैनर दिखाई दे रहा है जो सफ़ेद कलर का है जिसमें ब्लू कलर से कुछ लिखा हुआ --

और कुछ छोटे छोटे पत्थर दिखाई देरे हे जो ग्रे कलर के हे और मिटटी कलर के हैं।

यहाँ पर मुझे एक बगीचा दिखाई दे रहा है जिसमे बहुत सारे घास दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के है।

और एक ससरने वाला झूला दिखाई दे रहा है जो मिट्टी कलर का है।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

और ब्लू कलर का है और एक झंडा दिखाई दे रहा है जो हरे कलर का है।

और एक बड़ा सा बेनर दिखाई देरा हे जो सफ़ेद कलर का हे जिसमे काले कलर से कुछ लिखा हुआ हैं।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

और कुछ छोटे छोटे घास दिखाई दे रहे हैं जो ग्रीन कलर के है और मिट्टी कलर के हैं।

जिसमें एक राधा कृष्ण का फोटो दिखाई दे रहा है और कुछ केक दिखाई दे रहे है जो पिंक कलर के है और येलो कलर के है।

यहाँ पर मुझे कुछ टेबल दिखाई दे रहे हे जो काले कलर के हैऔर सफ़ेद कलर के है।